ये एक मार्केट का एरिया ये एक मार्केट का एरिया है यहां पे बहोत सारा हमें ऑटो दिख रहा है।

ये एक अटपाटमेंट ये ये एक अ अटपाटमेंट है यहाँ पे हम देख रहे --

वहा पे टिशू पेपर रखा हुआ है पानी का जग है।

यहां पे ये यहां पे हम देख रहे है एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है बैंक ।

रंग बिरंगी पानी भी आता है वहां पे चारो छोटा छोटा कांच लगा हुआ है और थोड़ी जिस प्रकार में सब--

ये कार का शोरूम है हम यहाँ पे तीन ठो कार देख रहे है जोकि खड़ा है तीनों व्हाइट कलर का है और एक जस्ट चेयर दिख रहा है जोकि --

पौ पेड़ लगा हुआ है यहां पे ख्लिप बना हुआ है जहां की हमलोग बैठ सकते हैं।

लाइफ मे सबके कोई ऑनलाइन पेमेंट करे कोई कैश कर रहे है।

क्योंकि एक का एक मतलब पेड़ नीचे से किया हुआ उसका टहनी पे को पकड़ के--

और यहाँ पे बहोत बड़ा पेड़ है। और यहा पे बहोत बड़ा घर भी है।

कपड़े कहीं सूख रहे हैं कहीं कुछ है।

दवा फाइल और चेयर रख रहा है अपना स अपना वहां--

और ये स्टार्च भी है स्टार बना हुआ है नकली--